पानी की फव्वारे बने हुए हैं लाइट्स लगी हुई हैं।

काले रंग की कुर्सियां है एक पानी का कूलर रखा हुआ है।

और सामने दीवार पे फेंसिंग करके है जाला लगा हुआ है और घास है पेड़ पौधे है।

एक घर जैसा है पीछे से बना के पिंक कलर करके है उसमें नीचे से मिट्टी है बहुत से लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं।

पार्क को ऊपर से छत बनाके है हाथी के ऊपर बिजली के पोल्स हैं।

पीछे कुर्सियां है ग्रीन कलर की मैटिंग है।

पीछे से गांव के लिए सड़ बना के हैं बहुत से पेड़ पौधे हैं मिट्टी का देर है।

दरवाजे पे शीशे लगे हैं। दुकान के अंदर ऐ_सी लगे हुए हैं।

वहां पे बहुत सी लड़कियां नाच रही हैं एक आदमी फूलों की टोकरी सर पे रखा हुआ हैं।

और जंगल लग जंगला लगा के हैं नीचे से बहुत सारी घास है एक कच्चा रास्ता भी बना के है।

दूर से बहोत सारे पेड़ हैं नीचे कुछ कपड़ा रखा हुआ है।

मूर्तियां बनाके है। एक बड़ी मूर्ति है सफेद रंग की। साइड में दो छोटी छोटी मूर्तियां हैं।

एक गेट खुला हुआ है लोहे का गेट जिसके अंदर से अंधेरा है और अंदर भी दुकानें बनी हुई है जिनका शटर बंद करके है।

एक गाड़ी है एक मैकेनिक उसको ठीक कर रहा है।

बहोत से पेड़ पौधे लगा के है पारक में कुछ बड़े पेड़ है कुछ छोटे हैं।

स्लैब बने हुए हैं बहुत सारे जिन पर अलग अलग रंग के कपड़े रखे हुए हैं।